मुझे इस चित्र में एक डॉग की पिक्चर दिख रही है।

मुझे इस चित्र में एक साड़ी की दुकान देख रही है।

मुझे इस चित्र में एड दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में कुछ कार्टून रखे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस चित्र में पेड़ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में फूलों से सजावट दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस चित्र में कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस चित्र में कुछ कार्टून रखे हुए दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में सूखी हुई घास दिख रही है।

मुझे इस चित्र में एक मैनेजर नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में बैग रखे हुए नजर आ रहे हैं।

मुझे इस चित्र में लाइट जलती हुई दिख रही है मुझे इस चित्र में लाल रंग की लाइट दिख रही है।

मुझे इस चित्र में तीन लैपटॉप दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में धार लिखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक इमारत दिख रही है।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

मुझे इस चित्र में ग्रीन कलर के लाइट दिख रही है।

मुझे इस चित्र में कंप्यूटर रखे हुए दिख रहे है।

मुझे इस चित्र में तीन आदमी दिख रहे हैं।